शायद किसी गोरमेंट प्लेस वगैरा का गेट है अ देखने से तो यही लग रहा है।

आ मछलियां वगैरा की नजर आ रही है।